थोड़े स्टाफ़्स दिख रहे हैं थोड़े डिब्बे दिख रहे हैं एक साइड में पोस्टर है जिसमें सलमान खान है।

ये एक सैलून है वहां पे दो चेयर्स रखे हुए हैं गोल्डन कलर का थोड़ा लेक बैकग्राउंड है।